सामने मुझे काफी ज्यादा अह खिड़कियां और दरवाजे नजर आ रहे हैं।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

आस पास मुझे बहुत सारे लोगों की भीड़ नजर आ--

मुझे यहां पे एक माला सफेद रंग की आ रही नजर आ रही है जिसमें--

मुझे यहां बच्चों के झूले भी नजर आ रहे हैं और--

रोड की तरफ जा रहे हैं यहां पे मुझे बहोत सारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और।

इस तस्वीर में मुझे कुछ बिल्डिंग्स दिखाई--

बेंच और डेस्क नजर आ रहे हैं बेंचेज में बहोत सारे बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे है यहां पे मुझे दो खिड़कियां भी नजर आ रही हैं जो शीशे की बनी हुई--

इस तस्वीर में मुझे एक समुंदर नजर आ रहा है जिसके ऊपर एक बोट भी चलती हुई दिखाई दे रही है गोट के आस पास मुझे हरे भरे पेड़ और--

लाॅंग लहंगे पेहने हुए हैं और --

लिखा हुआ है यहां पे मुझे बहोत सारी शॉप्स भी दिखाई दे रही है जिनके शीशे के दरवाजे नजर आ रहे है।

यहां पे कंप्यूटर भी चला रहा है और बिलिंग कर रहा है।

यहां पे इनके लिए भी खिलौने रखे गए हैं।